ये लग रही है फ्रूट का दूकान है बहुत प्रोकार का फ्रूट रखा हुआ है बहुत बेहतरीन फ्रूट दिख रहे मेरे को।

ये भी कोई रेलवे स्टेशन है लेकिन यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी है दो आप देख सकते है कुछ पेड़ है और ये बिजली से चलती है ट्रेने है।

ये नज़ारा देख सकते हैं आप देखने का नज़ारा है जो सामने पुल है और दूर सब नज़ारा दिख रहा जो पहाड़ की दिख रही मेरे को और कुछ पानी है।

टमाटर है भिंडी है उसके बाद कच्चे केले है धनिया पत्ता है टमाटर है आलू है प्याज है और अनार के साथ में देख सकते है आप लोग कितना जबरदस्त फल की दूकान है यहाँ पे यहाँ--

और कार खड़ी है रेड कलर की और दो वाइट कलर की और शोरूम के बहार कुछ आदमी दिख रहे है जो खड़े है उन लोग--

और लाइटिंग यहाँ पे नही है लाइटिंग जैसा दिख रहा है साइड मे झालर टाइप का पीला कलर के साथ।

साइकिल शॉप है जो बच्चे का साइकिल है सब सब देख सकते है छोटो का सब साइकिल है बच्चे का आप साइकिल सब को देख सकते है बहोत सारे साइकिल रखी हुई है यहाँ पे और दो रिंगी भी टंगी हुई है।

अगल-बगल में पेड़ लगी हुई है आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन स्कूल दिख रहा है ये मेरे ख्याल से स्कूल ही होंगे।